इसके आस पास कोई भी--

उसके आस पास कोई भी नहीं है।

यह एक खूबसूरत सी जगह है।

यह एक बगीचा है यहां पर--

यह एक रेस्टोरेंट है यहां पर--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

बच्चे बैठे हैं और वह लोग पढ़ाई कर रहे हैं।

यह एक बंधन बैंक है जिसके सामने--